इस इमेज में हमें एक स्टेज दिख रहा है।

के बोर्ड पर पंजाबी ढाबा लिखा है।

नीचे व्हाइट और रेड बलूंस लगे हैं।

घर के ऊपर भोपाल लाइब्रेरी लिखा है।

इस इमेज में हमें एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

जो वॉलपेपर लगा है।

इस इमेज में हमें एक मेडिकल दिख रहा है।

इस इमेज में एक आदमी बैठा है।

इस इमेज में हमें एक ग्राउंड दिख रहा है।

एक वाइट कलर का है एक ब्लू कलर का है।

मस्जिद का कलर व्हाइट और क्रीम है।

मिठाई रखी है लड्डू रखे हैं।

इस इमेज में हमें एक हाल दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक सड़क दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक शॉप दिख रही है।

बाहरब्लू चेयर रखी है।

साइड में टेबल लगी हैं टेबल पे भी सामान रखा है।

एक स्नो वाइट मैन बना है बहुत सारे हिरन रखे हैं।